बहुत सा अच्छा घर है टेबुल हैं कुर्सी रखा हैं लाइट ऊ बहुत अच्छी सी लगी हैं नहाने उ टेबुलेल लगी है आदमी सब बहुत है गाड़ी घोड़ा सब हैं।

और तीन मंजिल का मकान है और चारों ओर पेंट पांट है जंगला और लगा है टेबुल कुर्सी है अंदर बैठने के लिए ऑफिस रूम है चार चक्का है आने जाने के लिए और टेबुल कुर्सी है आने जाने के लिए --

चक्का और लगाया है पटरी ट्रेन का तीन मंजिल है टावर उर है और बहुत बस्त लग रा पेर उर और है पौधा उर है आदमी से खेल रहा है बाइक हो रहा है।

और आदमी सब प्रणाम कर रही है आदमी सब अ सब घूम रही है ओने-एने अपना-अपना ठीक करे है आदमी सब।

बहुत तरह के बकरिया है खा रही है जंगल में बहुत सारा जंगल है बकरी उसे खा रही है।

है इसमें कुछ सामान रखा है काउंटर में हेन तेन गणेश गणेश भगवान गणेश की मूर्ति है हेन तेन।

जाने के रोड है बहुत अच्छे से रोड है चारों बगल से पेड़ पौधे हैंने घास रंग बिरंगे बहुत अच्छे से सहर है।

का दो एक लेडिस सड़की पर जा रही ओने दुकान बहोत अच्छी सी

हार्डवेयर के दुकान है इसमें कुछ कुछ चदरा उ रखा है चदरा है टीना उर है एने बक्सा उ रखा है।

और चार बहुत टेबुल है दु थो पंखा है और वाइट कलर का मकान है और बहुत तरह का पंखा है।

और लिस्पीटल मे उह तरह का पंखा और बोड वोड लगा है चार्जर उह है लेपटॉप दु है एक--

और हिन्ते हर सर समान सब व्हा व्हाइट पंख आऊर लगा है और उँ उँ उँ दज्याजिम तकिया आऊर है सुतने बैठने के सोफा आऊर लगा है।

बहुत अच्छे दुकान हो रहा है और इसमें हर सारा सामान ओ मिलते हैं और कुछ आदमी से काम और कर रहे हैं इसमें जज जंगला और लगा है लोहा गेट उ है।

और लाल कलर के टाईशू लगा है वाइट कलर का टाईशू कुछ आदमी घूम रहे हैं कुछ अ कुछ कर रहे हैं।

बहुत अच्छे से रूम है बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं बचा समझ में टेबुल रखा है कुर्सी पर बच्चे से बैठे हैं।

लाइट मकान के आगे दो तीन चार चक्के हैं।

और अंदर कुछ पोस्टर चिपकाया है मकान बहुत अच्छा से है और आदमी अच्छे से--

एक दुकान है दुकान के आदमी आदमी बैठे है दो आदमी बैठे कुर्सी पर बैठे है दुकान वाले बैठे हैं।

जिम करने की मशीन है और बहुत सी वो सब नजर पर रहे हैं और वजे सब उधर हैं बच्चे सब जिम --

एक आदमी बाइक पे बैठे हैं और बहुत तरह के बाइक लगे हैं येही खातिर कुछ लिय दिए खड़े हैं।

गेट बहुत अच्छे है गेट के अंदर फूल-वूल लगा है बहुत अच्छे से फूल-वूल है आ गेट के आदमी गेट आगे बाहर एक आदमी खड़े है फूल-वूल लगा है चारो बगल से।